महल के पीछे बहोत सारे घर और पहाड़ है।

इस तस्वीर में हमे एक नदी को दिखाया गया है।

बंगले के नीचे एक ग्रीन कलर का एक डब्बा है।

यह चित्र एक साइबर शॉप के हैं जिसमें एक व्यक्ति कंप्यूटर दबा रहे हैं और वो ब्लैक कलर के टी_शर्ट पहने हुए हैं।

तेबर भी ग्लास से बने हुए हैं और एक व्यक्ति सफेद कलर की टी-शर्ट पहन के हैं।

नदी के बीच एक वाटर फाउंटेन बने हैं जिससे पानी अभी भी निकल रहे हैं बहुत से लोग देख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें भारत का झंडा दिखाता है जो की वाइट कलर की एक पोस में है और पोस के एंडिंग पार्ट जो गोल्डन कलर है।

एक में येलो कलर के कपड़े से बांध के हैं और एक में लाल कलर से।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

जिसके चार फ्लोर हैं बंगला के एक भी खिड़की खुली नहीं है।

यह चित्र एक जिम के अंदर के हैं।

किसी व्यक्ति के बाल दिखाई दे रहे हैं।

गेट भी रेड कलर के हैं जिस पर ब्लू कलर के सिंटेक्स है।